यहाँ पर दो लड़के बैठे हुए है एक लड़का फ़ोन चला रहा है जिसने महरूम कलर की शर्ट पहन रखी है यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर एक पेड़ है यहाँ पर--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्रोसरी शॉप है यहाँ कुछ ऐ_सी लगी हुई है यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है यहाँ--

जिसके हाथ में बुक है यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने येलो कलर की टीशर्ट पहन रखी है मास्क लगा रखा --

यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर काफ़ी ज्यादा लाइट जली है यहाँ पर अआ काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर बिसलेरी की बोतल रखी हुई है यहाँ पर--

एक आदमी खड़े हुए हैं जो कि बलून लिए खड़े हुए हैं यहां पर ग्रीन ऑरेंज रेड पिंक --